यह एक बहुत बड़ा हॉल जैसा लग रहा है इसकी दीवाल पेंट की हुई है।

बाउंड्री पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस में रैनबो किड्स स्कुल लिखा हुआ है।

वो सभी व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए हैं | और मैदान के आस-पास कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं |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

एक मोटर साइकिल पर हेलमेट टंगा हुवा है। एक साइकिल भी रखी हुई है। एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है और वहां पर राजकीय आई.टी.आई. लिखा हुआ है।

तस्वीर दिख रहीं हैं लोहे के पिलर भी दिख रहे हैं और पानी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

पानी में हरी हरी घास भी दिख रही है। को ईंट भी पड़ी हुई है।

तस्वीर में एक बहुत बड़ा भवन दिख रहा है सामने रेलिंग लगी।